देखो कोई घर का काम चलता है या बिल्डिंग का काम चलता है जिसमें बोहोत सारे वर्कर बोहोत सारे मजदूर खड़े है जो टोपी बी या हेलमेट पहेन कर के और ये च और ये कियान गाड़ी काम कर रहा है खुदाई कर रहा है और इसके आगे बोहोत बड़े-बड़े लोहे लगे हुए है।